इसमें मुझे बहोत सारे छात्र दिख रहे हैं।

इसमें मुझे बाहर दो व्यक्ति खड़े दिख रहे हैं।

इसमें मुझे किनारे फुटपाथ बना दिख रहा है।

इसमें मुझे टीन का समान दिख रहा है।

इसमें मुझे इस्टेज बना दिख रहा है।

इसमें मुझे गुब्बारे का डेकोरेशन दिख रहा है।

इसमें मुझे बाहर गमले दिख रहे हैं।

ट्रक में रुद्राक्ष वेयर हाउस टीमरी दिख रहा है।

बिल्डिंग में औद्योघीक प्रशिक्षण संस्थान लिखा दिख रहा है।